यहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं कुछ व्यक्ति--

नीचे येलो और रेड कलर का दिया हुआ है। कुछ हरे मैट बिछे हुए --

और पर्ली साइड में यहां पर कुछ चट्टानें भी बनी हुई है।

पीछे यहां पर रेत की चट्टान पड़ी हुई है।

ऊपर पीछे बिजली के खंभे भी खड़े हुए हैं और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर गणेश जी भगवान की मूर्ति रखी हुईं है दो।

भगवान जी की गले में यहां पर मालाएं रखी हुई हैं।

इस पर नीचे पत्थर लगा हुआ है वाइट कलर का।

पेप्सी भी रखी हुई है यहां पर। कोको कोला स्प्राइट पानी और माजा यहां और पेम्पर्स पैंट भी लगे टंगे हुए --

यह एक मछलियों की दुकान है जिसमें अलग-अलग तरह के अलग-अलग लगे हुए हैं मछियों के।

यहां पर ढोलक बनाई जा रही है जिनका कलर कॉफी और परत व्हाइट कलर के यहां पर ढोलक है।

छत का कलर व्हाइट कलर का है और यहां पर कुछ निशान बना हुआ है।

ऊं ये यहां पे कुछ गाड़ीया खड़ी हुई हैं।

और यहां पर कुछ व्यक्ति बाइको को से जा रहे हैं।

इसमें टिन शेड पड़ा हुआ है जिसमें लाइटें लगी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी। पंखे भी टंगे हुए हैं इसमें।

यहां गाड़ी की सभी डिग्गी की खी खिड़कियां की खुली हुई हैं। नीचे यहां पर पक्का हो रहा है।

यहां पर अलग अलग तरह की किस्मों की अलग अलग किस्मों कि यहां पर दवाई रखी जा रही है शीशे में भी है कुछ काउंटर में।

अंदरली तरफ यहां पर पंखे भी लगे हुए हैं। बाहरली तरफ भी पंखे लगे हुए --

कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एक स्कूल की गाड़ी भी खड़ी हुई है यहाँ पर।

यहां पर कुछ व्यक्ति भी है और ऊपर एक हरे कलर के मैट बिछे हुए हैं।

यह एक क्लीनिक है जिसमें यहां पर बच्चों का पाउडर रखा हुआ है।

सैलून की दुकान पर गुब्बारे लगे हुए हैं रंग बिरंगे यहां पर दो कलर के।

ग्रीन और व्हाइट और नीले कलर का शटर है।

और कुछ फुलवाड़ी भी लगी हुई है यहां पर।

पीछे यहां पर एक और मकान बना हुआ हैं जिस पर लिपाई नहीं हो रही--

कुछ पंखे भी लगे हुए हैं ऊपरली साइड में और कुछ बैनर्स लगे हुए हैं।

इसमें ब्लैक कलर का बाल्टी तरफ शीशा लगा हुआ है पीछे हरे कलर की मैट है।

और बराबर में एक रस्ता जा रहा है और एक पेड़ भी हैं यहां पर।

और आगे यहां पर कॉलोनी बनी हुई है मार्केट है ये और यहां पर बहोत सारी रिक्शा खड़ी हुई है।

यहां पर बेड पड़ा हुआ है जिस पर गद्दे नहीं पड़े।

यह एक रूम है जिसमें यहां पर बेड पड़ा हुआ है।

आगे शीशा लगा हुआ है कुछ लाइटें लगी हुई है।

इस पर कुछ व्हाइट कलर का पेंट दिया हुआ है।

ऊपर बैनर लगा है मारुति सूजी का।

यहां पर दुकानदार सामान भी बेक रहे हैं यहां पर रंग बिरंगे अलग अलग तरह के--

अं इसमें लहरें आ रहे हैं कुछ लोग फोन चला रहे हैं इस--

यहां पर एक बहुत सुंदर मकान बन रहा है।

पीछे बिजली के तार खींचे हुए हैं खम्भे के खम्भे पर--

एक आदमी अपने बाल झाड़ रहा है खड़ा हुआ।

यहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यहां पर एक गाड़ी की धुलाई हो रही है।